ये फोटो मुझे किसी रेस्टोरेंट का प्रतीत हो रहा है।

प्रिंटर मशीन को बैनर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है मार्केट में--

बड़े बड़े बैनर प्रिंट करने के लिए यूज मे लाई जाती है।

यह कंपनी काफी बड़ी है अभी इसका उद्घाटन हुआ है।

किसी बजने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के काम है।

बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।

जो काफी सुविधा जनक लाइब्रेरी है।

काफी बीच में स्थित है।